सामने सीढ़ियां जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं और दीवार पर एक टी_वी भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग चेयर्स पर बैठे दिखाई दे रहे हैं एक लड़का खड़ा हुआ है और --

इस तस्वीर में सामने एक कार दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई दे रही है।

राज के अंदर चार लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान है दुकान के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है दुकान के बाहर उपर की तरफ सेलेक्ट --

दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें जिसके बीच में एक --

ये किसी तरह का कोई बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में सामने की तरफ एक व्हाइट बोर्ड रखा गया है जिस पर --

ये एक साइकल की दुकान--

दुकान में बहुत सारी सी फूड आइटम रखा हुआ है जैसे कि--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

और एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा है।

ये एक खाली प्लॉट है।

के साथ एक दीवार है।

तीन तारें भी दिख रही हैं।

कमरे में बहुत सारी किताबें दिख रही हैं।

सामने की तरफ दीवार पर एक तरफ साइड में एग्जास्ट भी दिख रहा है।

पार्क में एक पतला सा खम्भा भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है इस भीड़ में एक छोटा सा बच्चा चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है इस स्टोर में एक लड़की पीठ करके खड़ी हुई है।